यहां पे हमें एक वेजीटेरियन रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

यहां हम एक रेस्टोरेंट केबिन देख सकते हैं।

रेक पर प्रतियोगिता से संबंधित ट्रॉफी रखी गई है।

मैदान में कुछ टेंट लगे हुए देखे जा सकते हैं।

विद्यालय के बोर्ड पर यू_पी_एस और डॉ भीमराव नाम से कई शब्द लिखे गए --

नजदीक में एक साइकिल चार युवक भी नजर आ रहे हैं।

एक बड़ा सा पेड़ है जिसकी लंबी लंबी शाखाएं लटकती हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर हमें एक रेस्टोरेंट देखने को मिल रहा है।

आस पास कुछ गाड़ियां और पीछे की तरफ एक पेड़ हमें दिखाई दे रहा है।

आस पास दीवारों पर कुछ तस्वीरें और पंखे लगे हुए हैं।

खेत के अंदर सब्जी उगाई गई है।

यहां पर हमें पत्ता गोभी की सब्जी देखने को मिल रही है।

यहां पर हमें हार्डवेयर टूल की एक दुकान देखने को मिल रही है।

एक व्यक्ति जो की ड्रिल मशीन के साथ कंस्ट्रक्शन के काम को अंजाम दे रहा है।

रैक के अंदर ग्रॉसरी का कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें छत की एक बिल्डिंग नजर आ सकती है।

दुकान के बोर्ड पर श्री श्रद्धा स्टोर लिखा हुआ दिखाई दे सकता है।

दुकान के बाहर सामान खरीदते हुए कुछ लोग भी नजर आ सकते हैं।

दुकान के अंदर लकड़ी के बड़े बड़े रैक देखे जा सकते है।